और यहाँ पर काले मिर्च भी है लाल रंग के नीचे --

बाहर की तरफ कुछ लोगो की भीड़-भाड़ दिखाई दे रहे है दीवाल दिखाई दे रहा है दीवाल एक रेड रंग का पैंट है पर्दा लगा हुआ है पर्दा लाल रंग का दिखाई दे रहा है दरवाजा बाहर की तरफ खुला है ।

और इंद्रधनुष के रंग की तरह है दो आदमी यहाँ पर खड़े हुए है सूरज का रंग यहाँ पर पीला-पीला सा नजर आ रहा है पानी दिखाई दे रहा है पानी में सूरज की परछाई भी आ रही है ।

मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फील्ड दिखाई दे रहा है जहां पर हरा-हरा सा घास है और यहाँ पर कुछ बच्चे है जो कि फुटबॉल खेल रहे है।

यहाँ पर मुझे एक बरामदा-सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ बाल्टियाँ रखी हुई है। कुछ आदमी भी खड़े हैं। एक आदमी --

अ यहाँ पर मुझे कुछ लोगो की भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ छत पर सफेद रंग की लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर खंभे बने हुए है सामने की तरफ --

हां मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहाहै जो कि बैठा हुआ है और यहाँ पर कुछ ऐसे मशीन सा रखा हुआ है इसका रंग --

कुछ गद्दे कागज के दिखाई दे रहे हैं जमीन पर।

हम्म्म गोल-सा चबूतरा-सा है यहाँ पर चकोर सा चबूतरा टाइप का दिखाई दे रहा है जो की रंग बिरंगा वो दिखाई दे रहा पीछे से ऑरेंज रंग का --

आसमान का रंग इंद्रधनुष के रंग की तरह हल्का सा दिखाई दे रहा है जिससे पुरी झलकी नदी के अंदर भी आ रही है।

कुछ एकदम डार्क गुलाबी रंग के फूल है कुछ प्याजी रंग के कुछ पीले कुछ हल्के पिले रंग के कुछ सफ़ेद रंग के --

यह लपेटे हुए है पिले रंग का और यहाँ पर सामने की तरफ एक मस्जिद का दरवाजा दिखाई दे रहा है जो की --

और साइड में वो टकला सा हो गया है और मशीन से वहा पर डिजाइन भी बना रहा है कुर्सी पे बैठा हुआ है ब्लैक रंग दिखी है सामने की तरफ सरस्वती जी की --

रंग का पैंट दिखाई दे रहा है। दीवाली का रंग पीला पेंट दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ काले परदे लगे --

आ जो की चश्मा लगाए हुए है और एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है नीली रंग के कुर्सी है और उस आदमी का पीछे का बाल काला-काला दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद रंग से पेंट है बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ के पत्ते हरे-हरे से दिखाई दे रहे हैं ।

ऊपर की तरफ हल्का-सा आसमान भी सफेद-सफेद झलक रहा है ये सामने के तरफ कुछ पीड़ा पीला-पीला सा पत्ता पेड़ का दिखाई दे रहा है बीच में कुछ गुलाबी नजर आ रहा है।

हाथ में कुछ डंडा सा पकड़े हुए हैं पीछे बैग टांगा हुआ है एक-दो आदमी छाता लिए खड़े हुए हैं एक आदमी का छाता गुलाबी दिखाई दे रहा है एक आदमी का छाता सफ़ेद --

बहुत गुब्बारे लगे हुए है और बहुत सारे रंग-बिरंगे पुतले लगे हुए है उसमे बहुत सारे --

लहंगे पहनाए गए है यहाँ पर फूल माला की झड़ियाँ लगाई गई है स्टील का ग्रील लगा हुआ है सफ़ेद रंग की लाइटे जल --

मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिजली की तारे दिखाई दे रही है बहोत सारी तारे ऐसी गई है।

बिल्डिंग के सामने की तरफ कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बड़े-बड़े से बैनर लगे दिखाई दे रहे है ऊपर की तरफ आसमानो की हल्की सी झलक --